है और जीप दिखाई दे रही है एक ठेला दिख रहा है जो नीला कलर का दिख रहा है यहाँ एक आदमी बेठा हुआ है उसने गले मे सफ़ेद कलर की दस्ती टांग रखी है ।

ओर उसके ऊपर ल--रेड अक्षर में लिखा है एन.ई.एक्स.टी नेक्स्ट डब्लू.ओ.आर.एल.डी --

यह बहुत सारे फल फ्रूट्स दिखाई दे रहे है केले है जो रस्सी से बंधे हुए है जो टंग रहे है एक डलीय आम हैं अनार है।

यहाँ दो टेबल रखे हुए है जो खाली है एक टेबल है जिस पर लड़का बैठा हुआ है वह काला कलर का दिख रहा है।

यहाँ पानी भरा हुआ है इसमें तीन बच्चे नहा रहे है है है है और पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के दिखाई दे रहे है और बादल---

यह पोस्ट है जिसके ऊपर लिखा है भारतीय डाक और ए.टी.एम --